पीछे एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी है।

यहां ए_टी_एम के गेट में शीशे लगे हुए हैं।

अन्दर दो सोफे हैं जिसका रंग काला कलर का है।

इसे कुछ झारल टंगी हुई है जिसका कलर येलो है।

लाइट का रंग सफेद है।

यहां दो आदमी खड़े हैं।

यहां बहोत सारे सोफे लगाए गए हैं सोफा का रंग सफेद है।

गद्दे भी हैं गद्दे का रंग सफेद है और यहां एक डमी रखा हुआ है।

आदमी का शर्ट का कलर व्हाइट और पेंट का कलर ब्लैक है और पैर में चप्पल पहना हुआ है मुंह में मास्क लगाया हुआ है।